इस क्लीनिक में बहोत सारी लाइटें लगी गई है।

यह स्कूल दो मंजिल की बनी हुई है इस स्कूल का कलर व्हाइट है।

इस मंदिर में एक पुजारी पूजा कर रहे हैं।

रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आए हुए हैं।

रेस्टोरेंट काफी बड़ा और काफी सुंदर है।

यह एक पोखरा है इस पोखरी में बहोत सारी पानी है।

पोखरा के बगल में बहुत सारी सीढ़िया है।

हॉल को सजाने के लिए बहोत सारे फूलों का उपयोग किया गया है।

इस पिक्चर में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे रड पाइप रखी गई है।

क्लीनिक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के समान बहुत सारे मेडिसिन रखे हुए हैं।

यह एक रेलवे स्टेशन है।

यह मंदिर काफी बड़ा है।

बहुत सारे घर बने हुए है अ इस माउंटेन में अ तीन झूले लगाए गए है।

इस मॉल में बहुत सारे बच्चे झूला झूल रहे हैं।

इस पिक्चर में एक बहुत बड़ी स्टेज बनाई गई है ।